इस इमेज में एक दुकान है।

और सामने एक औरत बच्चे को गोदी ली हुई है उसके पास बहुत सी--